पार्क के आसपास कुछ झूले लगे हुए है कुछ बैठन के लिए कुर्सियां लगी हुई है और सामने कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह चित्र किसी किराने वाले के दुकान का है जो की सामने लक्ष्मण किरण स्टोर्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहुत सारे घरेलू समान आने वाली चिजे और कुछ खाने पीने की भी चिजे दिखाई दे रही --

और नीचे जमीन पर कुछ मीठी भी नजर आ रही है और आसपास बहुत सारे पड़े पौद भी नजर आ रहे है।

बिल्डिंग का गेट खु--

स्कूल के अंदर बहुत सारे पेड़ पोदे दिखाई दे रहे है। और कुछ व्यान स्कूल की बसे भी सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इसमे दो खुर्ची भी रखी हुई है जिसपर कुछ आदमी और महलाये बैठी हुई नजर आ रहे।

यह चित्र किसी मशीन का है क्योंकि सामने बनाने वाली मशीन दिखाई दे रही है और एक ट्रक साथ मे खड़ा हुआ है।